यहाँ पर कुछ केक रखे हुए दिखाई दे रहे है जो काफी सुन्दर लग रहे है ये अलग अलग फ्लेवर के--

यहाँ पर लाइट का एक खम्बा दिखाई दे रहा है उसके सामने एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है जो काफी गंदा हो रहा है यहाँ पर काफी साडी मिटटी पड़ी हुई दिखाई दे रही है बड़े बड़े दो पेड़ दिखाई दे रहे है कुछ छोटे-छोटे झाडिया दिखाई दे रही है।

यह एक चॉकलेट्स की दुकान है जहाँ पर बहुत सारी चॉकलेट्स दिखाई दे रही है यह डेरी मिल्क की यहाँ पर एक डेरी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

छोटी छोटी खिड़कियां दिखाई दे रही है यहाँ एक बड़ा सा टावर दिखाई दे रहा है बिल्डिंग के पीछे और वाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

पार्क की दीवार काफी गन्दी हो रही हैं पार्क में काफी सारी मिट्टी पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

एक दुकान है जहा पे बहुत सरे रश के पैकेट्स रखे हुये है शोकेस बना हुआ है शोकेस मे काफी सारी मिठाईया रखी हुई दिखाई दे रही है।